एक रेस्टोरेंट है या होटल है एक रेस्टोरेंट या होटल है और यहां पर फैन भी लगे हुए है और लाइटें भी लगी हुई है और यहां पर कुर्सी डाले को-कोई व्यक्ति खाना खा रहे हैं।

एक शीशे पर एक कुर्सी नीचे उसकी रखी हुई है और दूसरे दूसरे शीशे के बगल पर एक कुर्सी नीचे रखी गई है।